हम देख रहे है कि एक बड़ा सा हॉल रूम है उसमें बहोत सारे ब्लू कलर के चेयर्स लगे है और इसमें बहोत सारे लोग भी बैठे है और --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

इनमे हम देख रहे है कि फ्लाई ओवर के ऊपर के तरफ एक पोस्टर लगा है ये पोस्टर कि-किसी इंसान का है ये इंसान मास्क लगाए हुए है।

और सामने में एक कालीन है जिस पर लोग नमाज़ पढ़ते हैं और ऊपर में एक अ पंखा भी चल रहा है।

यहाँ हम देख रहे हैं की किसी स्टेशन के बाहर का तस्वीर है इसके सामने एक स्टेशन है स्टेशन के सामने कुछ गाड़ी जैसे की टोटो ऑटो रिक्शा वगैरा खड़ी है।

बस स्टॉप में बहुत ही बस खड़े है बहुत तरह के बस खड़े है।

तस्वीर में एक बाग है ये बाग बहुत ही खूबसूरत और बड़ा है इसके बीच में फाउंटेन लगे है और इसके बीच-बीच में ये फाउंटेन --

कुछ लोग खड़े है और कुछ लोग कपड़े देखने के लिए ट्राई कर रहे है।

इस में खाने पीने कि चिप्स बिस्कुट चोलक्लेट वग्रेरा मिल रहे है और सामने मे में लोग भी खड़े है और इसके सामने एक घर है घर का दरवाज़ा भी दिख रहा हैं ।

एक खिड़की है जो बहुत बड़ा है और दो बोर्ड है एक ब्लैक और दूसरा व्हाइट कलर का। ये बोर्ड मीडियम साइज है।